यहाँ बहुत बड़ा जिम दिखाई दे रहा है जिम में हमें काफी सारे जो है लाइन से --

यहाँ पर हमें एक रूम दिखाई दे रहा है रूम का कलर व्हाइट है सामने एक ऐ-सी लगा हुआ है फ्रंट में जो है एक हमे डॉगी दिख रहा है जोकि बेड पर या टेबल पर लेटा हुआ है और वो ग्रीन कलर का कपड़ा--

यह दोनों भैंस रस्सी से रस्सी के द्वारा बंधी गई है।

मैदान में काफी सारी कार खड़ी है बाइक खड़ी है काफी सारे लोग भी दिख रहे हैं।

और हमें दिखाई दे रहे हैं। लोग भी दिख रहे इसमें काफी सारे लाइट्स के पोल है। लंबे लंबे तारों के साथ अटैच है। कुछ यहाँ पर दोनों साइड घर भी बने हुए हैं।